सब रंग के साड़ी दिखाकर सूट सब चीज है।

सब अपने-अपने नाच सीख कर घर पे जाएगी। घरे बैठेगी। कोई जा रही है कोई आई है कोई सीखते हुए बैठी हुई --

सर सब लोग समझ-समझ के अपने-अपने कुर्सी पे बैठे हुए हैं पढ़ रहे हैं।